जो भी ले सकते हैं यहाँ पर गरम मसाला भी उपलब्ध है जिस को भी लेना है यहां पर आप लोग आ सकते है दुकान में।

आप देख सकते है कितना अच्छा मोमेंट है सीन है कितना अच्छा लग घर रहा है ये घर।

और कई लोग शादी के द्वार पर प्रवेश कर रहे हैं अपलोग देख सकते हैं।

ये स्कूल है आप देख सकते हैं बच्चों का स्कूल है यहां पर।

और इधर मोटर साइकिल साइकिल लगे हुए हैं बहुत लोग साइकिल से कम पर आए हैं।

इ एक गाय है देख सकते है आपलोग और सभी लोग इस गाय को देख रहे है।

सजाया गया है इस चावल को आप लोग देख सकते हैं चम्मच भी है।

मेला देखने के लिए आए हैं और देख सकते हैं सभी लोग कितने अच्छे से मेला देखने आए हैं सभी लोग अपने-अपने फैमिली के साथ --

काश इ होता है वो देख सकते है बहुत ही अच्छा बनाया गया है।

लग रहा है यह किसका बडे पार्टी है।

इ लोग भी यहां पर बेच रहे हैं कॉपी और बुक सभी लोग यहां पर लेने आए हुए हैं बहुत ही अच्छी तरह से सजा --